इसमें एक बड़ी सी दुकान है।

मार्बल का फरश है काफी सुंदर सजावट है साफ सफाई--

यहां इसमें ए_टी_एम है।

इसमें एक होटल है यहां बहोत सारी कुर्सियां हैं।

और काफी सुंदर सजावट है।

इसमें काफी सारे परफ्यूम भी है और बात करने के सौंफ भी है।

इसमें एक बैंक दिखाया गया है यह बैंक आई_सी_आई_सी बैंक बैंक है।

यहां पर पंखे भी लगे हैं बड़े बड़े झूमर है।

जिसमें हरि भरी घास है।

इसमें एक बहुत बड़ी दुकान है।

हरियाली है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है।

पीपल नीम और बरगद जैसे पेड़ है।

इसमें बहोत सारे लैपटॉप है।

छोटे छोटे गार्डन है प्यारी सी सड़क है छोटे छोटे फूल हैं।

इसमें बहोत सारी मिट्टी है।

योगा कर रहे हैं और यहां बड़ा सा लाल रंग का मैट बिछा हुआ है।

यहां एक बड़ा सा टेबल है जिस पर--

यहां चारों तरफ बड़ी बड़ी घास और बड़ी बड़ी झाड़ियां है।

यहां पर बहोत बड़ा पहाड़ है।

यहां काफी सारी लाइटें हैं और मार्बल का फर्श है।